सामने एक कवर्ट है कवर्ट में कई सारे स्पोर्ट्स के सामान रखे हुए हैं।

यह एक रोड है रोड के सामने दो कार जा रही हैं।

मुर्गे की दुकान के सामने एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

और ये हॉल में लाइट भी जल रही है।

कमरे में कई सारी खिड़कियाँ भी हैं कमरे के अंदर सोफा भी रखा हुआ है।

कमरे में सोफे के ऊपर तकिया रखी है।

यह कमरे में टाइल्स भी लगी है यह कमरे में मैट बिछी हुई है।

तीनों लोग योगा कर रहे हैं यह कमरे में टाइल्स लगी हुई है।

यह दुकान में फेविकोल वैगरा रखा हुआ है यह दुकान में कार्टून के बॉक्स भी रखे हैं।

स्टेज के सामने मैट भी बिछी है स्टेज फूलों से सजा हुआ है।